और तीन पीले कलर की मशीन खड़ी है जिसके बराबर में एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है।

और एक व्यक्ति ने टी शर्ट और धोती बांध रखी है और साफा भी डाल रखा है।

और मेज पे एक चश्मा और कुछ फाइलें रखी हुई हैं।

यह मेज लकड़ी की है जो कोई प्लाई सफेद कलर की और चॉकलेट कलर की है।

जिसके बराबर में को पानी जा रहा है।

और एक दुकान के अंदर एक एल_ई_डी भी लगी हुई है।

और डाक घर के पीछे कुछ पेड़ भी है।

यह एक बहुत बड़ी क्लास है इसके अंदर एक व्हाइट बोर्ड और एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है।

इसके अंदर बहुत सारे गमले रखे हैं।

जोकि पोस्टर पे महादेव की और गणेश जी की मूर्ति है।

सभी टेबलों पे जग और गिलास रखे हैं।

यह एक बहुत बड़ा चैंबर है।

रेड ब्लैक व्हाइट कलर की--

यह एक क्रेडिबल एकेडमी है।

और इसके बराबर में सी_आई_आई_टी का एक गेट भी लगा हुआ है।

और इसके पीछे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग भी है।

और ऊपर की ओर से पानी भी नीचे की ओर आ रहा है।

नमो बुद्धाय जय भीम जय भारत लिखा हुआ है।

और नीचे दो बूढ़े व्यक्ति बैठे हैं जिन्होंने सफेद कलर के कपड़े पहने हैं और एक के हाथ में माइक है।

और दीवार पे बहुत सारे मट रखे हैं।

और दीवाल की बराबर में बहुत सारे गमले हैं।

बुफर के ऊपर एक पोस्टर भी लगा हुआ है।

और दो बोतल और पानी की रखी हुई है और मट्टी के कप भी रखे हैं।

और ठेके के सामने बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं और कुछ कारे भी खड़ी हुई है।

इसके अंदर सीमेंट और पानी बजरी और सरिया दिख रहा है।

और एक व्यक्ति पीले बलियान नीले कच्छे में तसले में मसाला लिए नीचे की ओर डाल रहा है।

और कुछ पोस्टर भी पीछे की ओर लगे हुए हैं और एक क्रिसमस डे की मूर्ति भी है।